डिलीवरी कर रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है यहां पे तीन चेयर रखी हुई है जिस पे कुछ लोग बैठ सकते हैं यहां --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

और यहां पे ब्लैक बोर्ड भी लि बना हुआ है यहां एक लड़का है जो रेड कलर के कपड़े पहन रखा है।

यह बच्चों का एडमिशन करता है ये ऑफिस में बैठा हुआ है यहां पे--

यह एक होटल का रूम है यहां एल_ई_डी लगी हुई है पास में चप्पल और रखने के लिए स्टैंड भी रखा हुआ है।

यहां मिट्टी भी लगी हुई है बीच पे बाउंड्रीइंग की गयी है जिसे आगे खेत भी बना हुआ है।

यह एक शादी का घर है यह वो रॉयल फैमिली से बिलॉन्ग करने वाले--

येलो कलर का ऊपर से भवन दिखाई दे रहा है यहां पे पार्किंग लॉड है जो बहोत सारी बाइक भी खड़ी है।

यहां पे पंखे भी लगा रखे हैं घंटी भी लगा रखी है नीचे कटे बिछाए हुए हैं यहां पे --

यह एक लड़का है मोटा सा जो सेल्फी खींच रहा है उसने ब्लैक कलर के कप शर्ट पहन रखी है पानी की बोतल हाथ में दे रखी है रेड कलर का एयरफोन है।

यहां पर पथरीली चेयर रखी हुई है जहां बहुत सारी भीड़ हो रखी है लोग आ रहे है जा रहे हैं कुछ बस में चढ़ रहे है।

यहां पे येल्लो भी फूल ऑरेंज कलर के फूल और छोटे मोटे पौधे भी बने हुए हैं।

यह ट्रैफिक वाला इलाका है यहां पे बहुत लोग आते जाते रहते हैं यहां पास में एक झोपड़ी बनी हुई है दो तीन ऑटो रिक्शा खड़ी है।

यह दो तोते हैं जिन्होंने रंग बिरंगी कलर दिखाई दे रहे हैं पास में एक बूढ़ा आदमी है जो इनको देख रहा है।

पास में एक दुकान भी बनी हुई है यह जोधपुर में बनी हुई है और पास में एक कांच वाला घर भी है।

यह एक घर है यहां पे ऐ_सी लगी हुई है नीचे अंडर ग्राउंड भी बना हुआ है।